यहां पर रास्ता थोड़ा बिजी नहीं है और यहां पर थोड़ा दुकान है जो की बंद है सफेद और ब्लैक कलर की ओर यहां पर धूप भी पड़ी रही --